पिले कलर कि लाल कलर कि और ये बिल्डींगे बनी हुई है हरे कलर कि रेड कलर है और सामने पेड भी खडे हुए है असमान ग्रीन कलर --

इसमें विंडो देख रही है। साइड में गेट दिख रहा है और बगल में भी घर --